एक कंप्यूटर रखा हुआ है बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं बहुत सारी कॉपीज जमी हुई हैं।

इस चित्र में मुझे बहुत बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है जो डेकोरेट है--

बहुत सारे नेकलेस जमे हुए हैं बहुत बड़ी सी दुकान नजर आ रही है।

एक टीन शेड नजर आ रहा है एक किरण मशीन खड़ी हुई है।

जिसमें बहुत सारे चम्मच रखे हुए हैं।

बहुत सारे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

इस चित्र में मुझे बहुत सारे लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।

बड़े बड़े गेट दिख रहे हैं बहोत सारी बिल्डिंगे दिख रही है।

इस चित्र में मुझे एक बड़ी सी सड़क दिख रही है जिसमें बहुत सारी साइकिलें रखी हुई हैं।

इस चित्र में मुझे बहुत बड़ा सा मैदान दिख रहा है जिसमें बहुत सारी रेलिंग दिख रही है।

कोका कोला की बोतल दिख रही है बहुत सारा टीन शेड दिख रहा है बहुत सारी कुर्सियां दिख रही हैं टेबल्स दिख रहे हैं लाइटें रही है।

और एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है।

फर्श दिख रहा है बहुत सारी चीजें दिख रही हैं।

बहोत बड़ा सा हॉल नजर आ रहा है।

सड़क दिख रहा है बहुत बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है।

बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मिट्टी दिख रही है।

इसमें हिंदी में जोहर जोमा लिखा हुआ है।

स्टेज दिख रहा है बहुत सारी लड़कियां दिख रही हैं बहुत सारे बलून दिख रहे हैं स्टेज दिख रहा है।

दीवारें दिख रही हैं टेबल दिख रहे हैं कुर्सियां दिख रही हैं।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

इस चित्र में मुझे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं रेलिंग दिख रही है।

इस चित्र में मुझे बहुत बड़ी सी--

बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है आसमान दिख रहा है।